आस पास झाड़ियां दिखाई दे रही है आसमान बादल दिखाई दे रहे है यहां पे--

यहां पे बहोत सारे छोटे छोटे लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं।